यहां पर बच्चों को ड्रेस मिल रही है।

यहां पर पानी का फुआरा लगा हुआ है।

यहां पर छोटे छोटे बहुत सारे खिलौने हैं।